यह एक ऑटोमोबाइल की बहुत बड़ी कंपनी है यहां पर औ कारें और सर्विसिंग की जाती है।

सामने वहा एक मैदान टाइप का दिख रहा है जहां पर लोग खेलने आ--

एक ढाबा है इस ढाबे में बैठक लिखा हुआ है लाल कलर से पंजाबी में तनी कुछ लिखा हुआ है और यहां पर एक ट्रक --

यह एक होटल है इस होटल पे ब्लैक कलर का एक बोर्ड लगा हुआ है उसी के सामने एक फैन तीन चार फैन लगे हुए हैं।

एक कैमरा भी लगा हुआ है इसमें उसकी वीडियो बनाई जा रही है।

पर एक मूर्ति है ये मूर्ति सफेद कलर की हैं जिसमें शिरडी साई को एक लेडीज बैठे हुए है और वहां--

सारे पे_टी_एम यू_पी_आई और जी_पे लगे हुए हैं।

ब्यूटी पार्लर है यहां पर ब्यूटीशियन को सजाया जाता है इसकी सामने पर एक दीवार दिखाई दे रही है।

ऊपर वॉल टे भी टाइम लगा हुआ है नीचे वॉल बहुत सारे मेकअप का सामान रखा हुआ--

थापा है इस थापे का नाम ट्वेंटी फोर है यहां पर कुछ कार आई है जो कि खाना खाने के लिए आई हुई है।

छोटे-छोटे पौधे लगे हैं एक बाइक भी खड़ी है बाइक के बगल में छोटा सा पार्क टाइप का हैं।

जिम है इस जिम में बहुत सारी लड़कियां एक्सरसाइज कर रही है सामने मा एक आदमी का पोस्टर बना हुआ है जो--

बनी है एक कार सामने से टोल गेट पर रुकी हुई है और एक आदमी--

और बच्चे रेस कर रहे हैं जो कि तीन बच्चे हैं एक जिसने ब्लैक कलर की टीशर्ट और हल्की निक्कर पेहेन रखी है वह दोनों लड़कों से सब--

और यहां पर कुछ लाइटें भी लगी हुई हैं कुछ तार दिखाई दे रहे हैं जोकि वायरिंग की--

ये जा सकती हैं मॉल जो है वो लाल और क्रीम कलर का दिखाई दे रहा है।

आंगन का रेस्टोरेंट है इसका नाम आंगन बताया गया है यहां पर एक मेज रखी हुई है इसके सारे तरफ ब्राउन कलर की--

कुर्सियां लगी हुई है सामने एक दीवार है जो कि ब्राउन कलर की रंग बरंगी कलर की--

जो कि अपनी-अपनी मैट लेकर आई है जो की पीले सफेद लाल नीले कलर की है।

नीचे बहोत सारी स्कूटियां खड़ी हुई हैं जो कि सफेद सफेद काले कलर की हैं।